यहां पर दो आदमी खड़े दिखाई पड़ रहे हैं जो कि एक आदमी हेलमेट पकड़े हुए हैं।

के बगल में एक खूंटा दिखाई पड़ा रहा है।

इस घर के ऊपर में एक छोटा सा घर है जो कोरगेट का बनाया गया है।

यह एक दुकान का दृश्य है जिसमे लिखा गया है खंडेलवाल।

इसके बगल में लरखा गया है एक बैग जो की लाल कलर में है।

एक आदमी लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है।

यह एक रोड का दृश्य है यहां पर बहुत सारे ऑटो रखे गए हैं एवं बहुत सारे कार भी रखी हुई है।

और इसके बगल में बहुत सारे पानी भी हैं।

यहां पर बहुत तरह के मोबाइल रखे गए हैं।

एक बच्चा फिसलन पर चढ़ा हुआ है जो रेड कलर के कैप से ढका हुआ है।

इसमें दो रस्सी लगे हुए हैं जो कि तार से बनाया गए हैं।

इसके अगल बगल में ए_सी भी लगा हुआ हैं।